एक गेट है जो की लाल कलर का है उसमे सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।

एक जंगल है जिसमें हरी भरी पेड़ है कुछ लम्बे-लम्बे पेड़ है कुछ छोटे-छोटे पौधे है।

बीच में कच्ची सड़क है जिसके अगल बगल में हरी भरी घासे है ऊपर आसमान दिख रहा है।

बहुत सारे हरे रंग घांस है जंगल के बीच में एक नदी है जो की जा काफी चौड़ी नदी है जिसमें जिसमें भूरे रंग का पानी बह रहा है।

चारो तरफ पेड़ पोधे है जो की हरे भरे है बांस के पेड़ लगे हुये है बगल में पोधे लगे है।

एक घाना खेत है जिसमें बहुत सारी घास है जो की हरे-भरे है ओर कुछ बड़े बड़े पेड़ है जो की हरे-भरे है ओर खाफी दूर-दूर में भी पेड़ है ओर पास-पास में भी पेड़ हैं।

एक सड़क है जिसके बीचे में एक चबुतरा बना हुआ है जिसमें चारो तरफ लोहे की जाली लगी है।

एक पार्क है जिसमे हरी भरी घास है चारो तरफ पेड़ पौधे है पार्क में कुछ लोग है जो की पार्क में घूमने आए हुए है।

जिसमे शटर लगा हुआ है जिसमे नीले कलर का पेन्ट हुआ है वह बंद है ओर एक लाल कलर का शटर लगा हुआ है जो की उसके बगल मे है ।